और एक यहाँ पर एक टेबल एक बाल्टी और कुछ सब कांच का बॉक्स बना दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारी तमाम चींज़े रखी दिखाई दे रही --

ये एक स्कूल नजर आ रहा है जो बंद अ दिखाई दे रहा है| यहाँ पर तमाम म ने उसकी फोटो लगी हुई है एक दुर्गा जी की एक दुर्गा माता की फोटो लगी हुई है भगत सिंह की फोटो लगी हुई है।

तमाम उम्म जो गांधी जी की फोटो है अम्बेडकर जी की फोटो है बहुत सारे नेताओं की फोटो लगी हुई --

सूरज जैसा ये चमकीली दिखाई दे रही है और इस के पत्ते पूरे मुझे येलो टाइप के --